फूल के पौधे रेड कलर के ब्लू कलर के और येलो कलर के खाफी सारे पौधे लगाए गए हैं।

उसके आसपास में काफी सारे नारियल के पेड़ भी हैं और यहां कोई खूबसूरत सा बड़ा सा पार्क है और उस पार्क के उस साइड --

आ रहे हैं और खरीद रहे हैं दो इंसान जो कि ड्राई फूड को --

कोई बाहर का व्यक्ति ना आ सके और उनके बगल एक दीवार में जहां पर लिखा है दोनों धूम्रपान निषेध है।

ठंड भी और यहां पर सभी लोग अच्छे से तैयार होकर आए हैं।

काफी लोग अपनी अपनी दुकान लेकर लगाए हुए हैं और सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं।

दृश्य को देख रहा है यहां पर नीम की और आम की बड़े-बड़े पेड़ भी हैं।

एक्सपेंसिव आइटम्स है और काफी सारे चीज जैसे कि ---

नीचे की तरफ जा सके और इसकी डिजाइन से --